यहाँ पर बीच में फूल है तरह-तरह के फूल है ।

लाइट है फूल है ब्लू रंग है ।

इधर आदमी है इधर आदमी कुछ बजा रहे है इधर भी आदमी कुछ बजा रहे है।